इमेज में मंदिर है मंदिर में मूर्ति रखी है। मंदिर में जेंट्स बाहर बैठे है।

आ शॉप पर अमर एंड अमर ड्राई क्लीनर्स लिखा हुआ हैं।

आ बालकनीस बनी हुई है आ बालकनीस में कपडे सुख रहे है।

आ ऊपर मरुति सुजुकी अरीना लिखा हे और लोगो लगा हे ।

इमेज में क्लास रूम है आ बेंचेस लगे हुए है।

आ बेड्स रखे हुए है कैरम रखे है।

बिल्डिंग बने हुए है और पेड़ लगे हुए है।

आ बोट पर आर के कॉफी स्टाल लिखा है अ बरनियो में बिस्किट्स रखे हुए है एक लड़का कॉफी पि रहा है।

आ किताब रखी है फेविकोल की बॉटल रखी हैं।

आ बिल्डिंग पर श्री राम प्लाजा आयकर कार्यालय लिखा हुआ हैं।

आ नदी आ उफान पे बह रही है।

इमेज में आ सब्जी का मार्केट लगा हुआ है।

दूसरी दीवार पर बर्ड्स की पेंटिंग बनी हुई हैं।